यह जिसके दो खिड़कियां दिख रही है दूर में बिजली का खंबा है और दूसरे खेत में भी कुछ लगा हुआ है साइड में दो बाल्टी रखा हुआ है।

यह एक नदी का फोटो है जिसके बगल में बहुत बड़े बड़े पत्थल है और बीच में भी पत्थर रखे हुए हैं।

यह एक बेडरूम का फोटो है जिसमें दो बेड लगा हुआ है इसके बेडशीट का कलर व्हाइट है।

पर बहुत सारे तार है और बहुत दिन फ्लैग है।

एक आदमी है जो मास्क लगाया हुआ लगाया हुआ है साइड में एक लेडीज का हाथ दिख रहा है नाव पर एक चक्का टांगा हुआ है।

बाहर में शौचालय का बोर्ड लगा हुआ है।

एक माझा का बोर्ड लगा हुआ है।

और दो चौकी है।

एक चौकी पर बहुत सारा बोरा रखा गया है और एक टेबल पर भी बोरा रखा गया है एक बोरा में बहुत सारा आलू है दूसरे चौकी में भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

और इसकी सीलिंग की डिजाइन काफी सुंदर है।

है जिसके अंदर बहोत अंधेरा है और इसके साइड साइड घेर दिया हुआ--

और बाहर में भी एक आदमी मोबाइल चला रहा है एक आदमी का सर दिख रहा है जो टोपी पहना हुआ है पहाड़ पर छोटे छोटे पौधे हैं।

सड़क के किनारे एक स्टेचू बना हुआ है जो चारों तरफ से घीरा हुआ है।

उसके अंदर छोटे छोटे घास है और इस फोटो में एक पेड़ भी दिख रहे हैं।

और एक तार है नीचे छोटे छोटे पौधे हैं एवं घास है।

हुआ है बांस के ऊपर दो आदमी हैं और उसके पीछे पोस्टर लगा हुआ--